यहाँ देखिये यहाँ पर एक रैली बनी हुई है जहाँ के साइड से उस साइड से भी जा सकते है इस साइड से भी जा सकते है यहाँ रास्ता बनाई गयी है।

जोकि यहाँ पर कुछ रस्ते भी है जाने के उस साइड भी पानी भरा हुआ है उस साइड भी पानी भरा हुआ है।

यहाँ पर कुछ पार्क में गाड़ियाँ भी कार खड़ी हुई है यहाँ पर ये रोड जाने का अंदर और यहाँ पर देखो कुछ पेड़ पौधे भी है जो की आपको--

यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक पोस्टर में कार्य नगर पंचायत यहाँ लिखा हुआ है जो ब्लैक से ब्लैक मे--